यह एक जिम है। यह जिम बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे लोग --

यह एक किराना जनरल स्टोर है। यह स्टोर बहुत ही बड़ा और सुन्दर है। यहाँ पे लाईट भी लगे हैं।

इसको चलाने वाले दो आदमी है यह दो आदमी इस नाव पे कर इस नदी का सफ़र ले रहे है और मजे भी ले रहे है ।